नमस्कार किकाड में डिजाइनिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किकाड में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को डिज़ाइन करना
इस ट्यूटोरियल के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबन्टु 1204 के साथ किकाड वर्जन 2011 हाइफन 05 हाइफन 25 उपयोग कर रहे हैं
इलैक्ट्रॉनिक सर्किट की बुनियादी जानकारी इस ट्यूटोरियल के लिए पूर्व आवश्यकता है
यूज़र को यह भी पता होना चाहिए कि किकाड में सर्किट स्किमैटिक कैसे डिज़ाइन करते हैं
इलेक्ट्रिक रूल चेक करना नेटलिस्ट जैनरेशन करना फुटप्रिंट्स के साथ घटकों की मैपिंग करना
सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया विसित httpspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर जाएँ
किकाड शुरू करने के लिए उबन्टु डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर बाएं कोने पर जाएँ
पहला आइकन जो डैश होम है उस पर क्लिक करें
सर्च बार में किकाड लिखें और एंटर दबाएं
यह किकाड मेन विंडो खोलेगा
ईस्कीमा खोलने के लिए ऊपरी पैनल पर जाएँ और ईस्कीमा टैब पर क्लिक करें
एक इन्फो डायलॉग बॉक्स खुलता है जो कहता है कि यह स्किमैटिक नहीं ढूँढ सकता
ओक पर क्लिक करें
हम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट स्किमैटिक प्रयोग करेंगे जो पहले बनाया गया था
ऐसा करने के लिए मैं फाइल मेन्यू पर जाउंगी ओपन पर क्लिक करुँगी
वो फोल्डर चुनें जिसमें फाइल सेव की गयी है
project1स्क चुनें और ओपन पर क्लिक करें
मैं विंडो रीसाइज़ करुँगी
अतः अब मैं ओपन पर क्लिक करुँगी
यह सर्किट स्किमैटिक खोलेगा
मैं माउस का स्क्रोल बटन प्रयोग करके ज़ूम इन करुँगी
इस सर्किट के लिए हमने नेटलिस्ट को पहले ही बना लिया है
और सम्बंधित फुटप्रिंट्स के साथ घटकों की मैपिंग कर ली है
अगली स्टेप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लेआउट यानी विन्यास बनाना है
इसके साथ शुरू करने के लिए ईस्कीमा विंडो के ऊपरी पैनल पर स्थित रुन पीसीबीन्यू बटन पर क्लिक करें
यह पीसीबीन्यू विंडो खोलेगा
एक इन्फो डायलॉग बॉक्स दिखता है जो बताता है कि इसे project1बीआरडी नहीं मिला
इस डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए ओक पर क्लिक करें
अब आप पीसीबीन्यू विंडो के ऊपरी पैनल पर रीड नेटलिस्ट बटन पर क्लिक करके फुटप्रिंट्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं
यहाँ नेटलिस्ट विंडो खुलती है
सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को ऐसे ही रहने दें
ब्राउज नेटलिस्ट फाइल्स बटन पर क्लिक करें
यह सिलेक्ट नेटलिस्ट विंडो खोलेगा
बेहतर दृश्य के लिए अब मैं इस विंडो को रीसाइज़ करुँगी
वांछित डिरेक्टरी से project1नेट फाइल चुनें और ओपन पर क्लिक करें
रीड करेंट नेटलिस्ट बटन पर क्लिक करें
यह चेतावनी दिखायेगा कि project1सीएमपी नहीं मिला
ओक पर क्लिक करें
अब क्लोज बटन पर क्लिक करके नेटलिस्ट विंडो बंद करें
आप देख सकते हैं कि सारे फुटप्रिंट्स इम्पोर्ट किये गए हैं और पीसीबीन्यू विंडो के ऊपरी बाएं कोन में रखे गए हैं
अब हम सारे फुटप्रिंट्स को पीसीबीन्यू विंडो के बीच में रखना चाहते हैं
इसके लिए पीसीबीन्यू विंडो के ऊपरी पैनल पर स्थित मैनुअल एंड ऑटोमेटिक मूव एंड प्लेस ओएफ मॉड्यूल्स बटन पर क्लिक करें
अब पीसीबीन्यू विंडो के बीच में एक बार राइट क्लिक करें
ग्लोब मूव एंड प्लेस पर जाएँ
फिर मूव अल्ल मॉड्यूल्स पर क्लिक करें
यह कन्फर्मेशन विंडो खोलेगा
येस पर क्लिक करें
बेहतर दृश्य के लिए अपने माउस के स्क्रोल बटन से ज़ूम इन करें
आप फुटप्रिंट्स के टर्मिनल्स को जोड़ने वाले सफ़ेद तारों को देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं
अगर आप इन्हें नहीं देखते तो पीसीबीन्यू विंडो के बाएं पैनल पर स्थित शो ओर हाइड बोर्ड रैट्सनेस्ट बटन पर क्लिक करें
सफ़ेद तारों को एयरवायर्स भी कहते हैं
अब हम मॉड्यूल को व्यवस्थित करेंगे जिससे कम से कम एयरवायर्स एक दूरसे को क्रॉस करें
अब आईसी 555 फुटप्रिंट पर राइट क्लिक करें
फुटप्रिंट विकल्प पर जाएँ और मूव पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं फुटप्रिंट कर्सर से जुड़ गया है
आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में प्रदर्शित ग्रिड के अनुसार घटक घूमता है
जहाँ आवश्यक हो एक बार क्लिक करके घटक को वहीं स्थित करें
मैं इसे यहाँ स्थित करने वाली हूँ
पीसीबीन्यू विंडो के ऊपरी पैनल पर ग्रिड ऑप्शन्स ड्राप डाउन मेन्यू प्रयोग करके ग्रिड के अंतराल को बदलना संभव है
अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जोकि 1270 है के साथ आगे बढ़ेंगे
घटकों को घूमाने के लिए आप शॉर्टकट की एम भी प्रयोग कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप मैं आपको दिखाती हूँ कि कपैसिटर संधारित्र को कैसे घूमाते हैं
कर्सर को कपैसिटर पर रखें
एम दबाएं
मॉड्यूल कर्सर से जुड़ जायेगा
जहाँ आवश्यक है आप इसे ले जा सकते हैं
घटक को स्थित करने के लिए एक बार क्लिक करें
घटक को घुमाने के लिए र दबाएं
उदाहरणस्वरूप अब मैं रज़िस्टर यानी प्रतिरोध को घुमाती हूँ
कर्सर को रज़िस्टर पर रखें और र दबाएं
उसीप्रकार आप सारे घटकों को व्यवस्थित कर सकते हैं
एयरवायर्स के बीच कम से कम प्रतिच्छेदन प्राप्त करने के लिए मैंने पहले ही फुटप्रिंट्स को व्यवस्थित कर लिया है
यह यहाँ प्रदर्शित है
अब हमें इन एयरवायर्स को वास्तविक ट्रैक्स में बदलने की ज़रुरत है
पीसीबीन्यू विंडो के दायीं तरफ लेयर टैब के नीचे अगर बैक लेयर चयनित न हो तो इसे चुनें
बैक लेयर हरे रंग से दिखाई गयी है
चयनित लेयर छोटे नीले एरो से दिखाई गयी है
ट्रैक्स बनाने के लिए पीसीबीन्यू विंडो के दायें पैनल पर स्थित एड ट्रैक्स एंड वियास बटन पर क्लिक करें
अब र1 के नोड्स में से किसी एक पर क्लिक करें
फिर हम र2 के नोड पर डबल क्लिक करेंगे जहाँ तार जोड़े जाने की ज़रुरत है
उसीप्रकार हम रज़िस्टर र3 और कपैसिटर सी1 के बीच एक अतिरिक्त तार जोड़ेंगे
अब हम र3 के नोड्स में से किसी एक पर क्लिक करते हैं
तार की दिशा बदलने के लिए एक बार क्लिक करें
फिर हम सी1 के नोड पर डबल क्लिक करेंगे जहाँ तार जोड़े जाने की ज़रुरत है
बना हुआ हरा ट्रैक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बने हुए वास्तविक कॉपर पाथ को दर्शाता है
ट्रैक की चौड़ाई बदलना भी संभव है
पीसीबीन्यू विंडो के मेन्यू बार में डिजाइन रूल्स मेन्यू विकल्प पर क्लिक करके यह किया जा सकता है
डिजाइन रूल्स पर क्लिक करें
डिजाइन रूल्स एडिटर खुलेगा जहाँ आप ट्रैक की चौड़ाई बदल सकते हैं
हम ट्रैक की चौड़ाई 15 से बदलेंगे
ऐसा करने के लिए ट्रैक विड्थ की वैल्यू पर डबल क्लिक करें
टाइप करें 15 और एंटर दबाएं
ट्रैक बनाने के लिए हम कीबोर्ड पर एक्स की भी प्रयोग कर सकते हैं
अब मैं आपको यह दिखाती हूँ
लेड डी1 के नोड्स में से किसी एक पर कर्सर रखें
एक्स की दबाएं
फिर हम र3 के नोड पर डबल क्लिक करेंगे जहाँ तार जोड़े जाने की ज़रुरत है
आप देख सकते हैं कि ट्रैक की चौड़ाई बड़ गयी है
इस तरह से आप बोर्ड के डिज़ाइन को पूरा कर सकते हैं
यहाँ मैंने इस बोर्ड के लिए डिज़ाइन पहले ही पूरा कर लिया है
अब मैं पूरी की गयी डिज़ाइन बोर्ड फाइल खोलती हूँ
हमें इस डिज़ाइन को पूरा करने के लिए पीसीबी एजेस बनाने की भी ज़रुरत है
इसके लिए हमें पीसीबीन्यू विंडो के दायीं तरफ लेयर टैब से पीसीबी एडजेस विकल्प चुनने की ज़रुरत है
अब लेआउट एडिटर विंडो के दायें पैनल पर स्थित एड ग्राफिक लाइन ओर पॉलीगॉन बटन पर क्लिक करें
अब इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनाते हैं
लेआउट के ऊपरी बायीं तरफ क्लिक करें
कर्सर को दायीं तरफ क्षैतिज दिशा में ले जाएँ
लाइन की दिशा बदलने के लिए एक बार क्लिक करें
कर्सर को उर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाएँ
उसी प्रकार हम रेक्टेंगल पूरा कर सकते हैं
अब मैं यह रेक्टेंगल पूरा करती हूँ
लेफ्ट माउस बटन पर डबल क्लिक करके रेक्टेंगल को समाप्त करें
अब फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें
ध्यान दें कि यह फाइल brd एक्सटेंशन के साथ सेव की गयी है
यह अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट के लिए बोर्ड लेआउट को पूरा करता है
इस ट्यूटोरियल में हमने पीसीबीन्यू प्रयोग करके किकाड में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन करना सीखा
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडिओ देखें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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद